एक लोग यहां पर खड़े हुए हैं।

पख्नों के अंदर येलो ग्रीन लाइट क्रीम कलर के पख्न हैं।

पर यह सिल्वर कलर से पेंट हुई है।

यहां पर एक मंदिर है।

और यहां पर एक बरगद का पेड़ भी लगा हुआ है सामने।

यहां फर्श व्हाइट कलर की है बहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

यहां पर सब व्हाइट कलर से पेंट है।

दो लोग व्हाइट कलर का शर्ट पहने है।

पीछे वाले ब्लैक कलर का शर्ट पहने--

बहोत सारे घर बने हुए हैं और बिल्डिंग बनी हुई--

इसके अंदर मां काली की मूर्ति बनी हुई है।

स्टील की कुर्सियां और मेज रखी हुई हैं।

और यहां पर ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

यहां पर ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए--

ईंटों का खड़ंजा लगा हुआ है।

उनके बगल में एक बाइक खड़ी है।

और उसमें व्हाइट कलर का हेलमेट पकड़ा हुआ है।

एक पेड़ लगा हुआ है सामने--

इसपे लिखा हुआ है द हाउस ट्वेंटी वन ।

चिल्ड्रेनस वाला गेमिंग जोन है।

एक गर्ल एक बॉय ।

यहां पर एक जेंट्स खड़े--

सरिया को बांधकर छत बनाने की--